ये चित्र मा हमते एक जगह छ दिखेण लगीं जमणा हमते ढूँगा की भीड़ छ दिखेण लगीं जु छ यमंणा हमते बहोत सारी झाड़ी छ दिखेण लगीं।

ई चित्र मा हम तैं एक कमरा दिखेण लग्युं जै का भीतर हमें एक बड़ी दीवाल दिखेण लगीं जै पर बहोत सारी फोटो छन लगीं ये पर हम तैं बहोत सारा लोग छ दिखेण लग्यां और बहोत सारी नौनी छन दिखेण लगीं।